ये ग्रीन कलर के घास से आर्टिफिशियल वॉल चिपकाया हुआ है।

टेबल और चेयर बहुत सारे है वहां पर ब्राउन कलर के पानी बोतल रखें हैं।

फ़िर हमें दूसरे साइड पर एक टायर दिखाई दे रहा है कार का।

उसके ऊपर वॉटर बॉटल रखी हुई हमें देखने को मिल रही है।

यहां पर हमें देखने से एक जंगल दिख रहा है और जंगल के बीचों बीच कैंपिंग आए हुए--

और यह एक बार है जहाँ पर दूसरे लोग दारु पीने जाते हैं और फिर यहां पर--

हमे यहां पर एक जगह देखने को मिल रहा है वो जगह पर बहोत सुनहरा रंग का जगह है।

उसके साइड पर बहोत सारे गांव और बस्ती देखने को मिल रहा है।

मिल रहा है जहां पर एक अंकल बालकनी में बैठे हुए हैं।

और बाहर में कैंडल्स भी जलाए हुए इंसान लोग देखने को मिल रहा है अंदर में बहुत सारे फंक्शन चले हुए है।

फिर वहां पर ट्रांसपेरेंटपैरेंट कलर का--

उसका पूरा स्किन छिला दिया है फिर उसे नंगा करके टेबल के ऊपर रखे हुए दिख रहे हैं।

फिर दूसरे साइड बहुत सारे मछली उनके जैसे बहुत सारे फेक हुए--

और करने वाले फ्लोर जो ब्राउन कलर का है और वो जहां पर इंसान--

व बिल्डिंग के पीछे बहोत सारा येलो कलर का बसेस खड़ा हुआ है।

यहां में देखने से हम लोग को एक छोपरी घर दिखाई दे रहा है।

यहां पर हमें एक बहुत लंबा सा घर देखने को मिल रहा है।

उपर में क़ुबा ग्रुप लिखे हुए है फिर दूसरे साइड पर बर्जर भी इंटरो सलुशन करके--

साइड में लड़की भी कोट और लहंगा पहनकर है और कैप भी पहनकर देखने को मिल रही है।

और फिर फादर एक सीढ़ी स्टेप पर खड़े हुए देखने को मिलते हैं और--

और यहाँ मे एक बच्चा का बाल कटवाते हुए देखने को मिल रहा है।

ब्लू कलर का एक वाटरफॉल गिरा हुआ है और यह लड़का।

एक जींस पहना हुआ है और एक वाइट कलर का शर्ट पहना हुआ है।

यहां पर एक बिल्डिंग दिख रहा है जहां पर वा व्हाइट कलर के वॉल से स्क्वायर शेप में है।

और फिर उपर चढ़के बहोत सारे स्क्वेयर शेप लाइट देखने को मील रहा है यह बिल्डिंग बहोत ज्यादा फर्निश हो चुका है।

रा फिर हमें उसके सामने बहुत सारे पेड़ पौधा पीछे तरफ में देखने को मिल रहे हैं फिर एक बाइक भी हमे साइड --

जो बहोत गहरा जैसा दिख रहा है और उसके साइड में डक भी दिख रहा है।

दोनों पानी में टहल रहे है फिश खाते खाते।

जैसे कि बच्चे अह उसके मां उसके पिता जी यह जो एक स्कूल फंक्शन चल रहा है फिर उनके पीछे उनका स्कूल दिख रहा है।

और उसके दूसरे साइड पर बहुत सारे बोतल भी रखें हुए हैं सफेद और नीला रंग के।

यहाँ पर हमें एक जगह दिख रहा है ये जगह पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखकर एक बिल्डिंग दिख रहा है।

और वो बिल्डिंग सफेद कलर का है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो ब्लू कलर में लिखे हुए दिख रहा है।

उसके सामने छोटे मोटे घास फूस भी हमें देखने को मिल रहा है।

ई घर के पीछे बहुत सारा जंगल है और उसके ऊपर में--

में पिक्चर पर एक घर दिखाई दे रहा है यह वो घर एक सुंदर सा फर्निश हो चुका है यहां पर लोग खाना खा रहे हैं।

सब खाना खा रहे हैं और उसकी मां अपनी बच्ची को खाना खिलते हुए देखने को मिल रहा है और ऊपर में बहोत सारा सुंदर सुंदर लाइट स सजाया हुआ है।

यहां में देखने से हमे एक रेस्टुरेंट दिखाई दे रहा है यहा रेस्टोरेंट में बहुत सारा लाइट्स दिखाई दे रहा है।